-- है यहाँ एक पहाड़ है पहाड़ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और एक आदमी नीचे से उसको देख रहा हैबोहोत बहु सारा पेड़ है।

-- पेड़ बरगद का है और उम् बहुत बड़े-बड़े यहां पत्थर है सीन बहुत अच्छा आ रहा है क्या ही बोलें इस सीन के बारे में।

हम्म उसी में सब आये हुए है निचे रेड कारपेट बिछा हुआ है बहुत अच्छा सा सज़ा हुआ है बहुत अच्छा सा सीन है एक आदमी के हाथ में कुछ कागज़ --

यहां एक नदी है एक आदमी खड़ा है आदमी सीढ़ीपे खड़ा है।

एक आदमी खैनी लटा रहा है और बहुत सारे बॉक्स है आदमी के सामने में बहुत ही अच्छा फोटो है एक खंडर सा घर भी बना हुआ है।

यहाँ चाय अड्डा है जिसका नाम है तंदूर चाय स्पेस्लिस्ट ।

और एक आदमी उसके पीछे जा रहा है फोटो बहुत ही अच्छा आ रहा है बहुत ही अच्छा फोटो गाड़ी ठीक वाला--